यहाँ तो एक सफ़ेद कलर की मस्जिद दी गयी हेगी हरे-भरे पेड़ भी लगे हुऐ हेंगे एक पंछी उड़ रहा हेंगा और यहाँ पे दो छत पे कपड़े भी सूख रहे हेंगे अरे वाह दूसरी छत्तों पे भी काम हो रहा हेगा और --

यहां पे हरे कलर का कारपेट भी बिछा हुआ है।

तो एक मस्जिद हैगी जहा पे लोग नमाज़ पढ़ते हैंगे यहाँ तो लाइटें भी लगी हुई हैं।

और यहाँ तो कुरान पाक भी रखे हुए हैंगे और हदीसें भी रखी हुई हैंगी और दरियाँ भी रखी हुई हैंगी अरे वाह !

एक पीले कलर की मस्जिद है जिसके सामने छोटे-छोटे बच्चे खेल रहेगें और आदमी खड़ा हुआ हैगा।

रेड कलर का घर हेगा जिसपे ऊपर एक ग्रीन कलर का गेट लगा हुआ हेगा उसपे तो एक कुण्डी भी लगी हुई है और जालिया भी लगी हुई हेंगी।

वाइट कलर की मस्जिद हैगी उसके ऊपर एक मीनार भी दिया होगा।